यहां पर एक मकान में है और मकान के भीतर थमले--

और यहां पर एक माला सी गिर रही है और यहां पर एक आदमी खड़ा है।

और यहां पर बराबर में पर्दे से लग रहे और एक बराबर में कंटा टंग रहा है।

और यहां पर एक खंभे एक डंडे पे एक लाइट टांग रखी है।

और तो बहुत अच्छा सज रहा है।

यहां पर बहुत अच्छा सज रहा है।

और यहां पर बहुत सारी भीड और एक ऊपर बोर्ड सा लग रहा है बहुत बड़ा।

और यहां पर कुर्सी पड़ी है दो और बराबर में काउंटर सा पड़ा है।

और बराबर में एक अलमारी धरी है।

गिराई हुई एक बराबर में वेह पेड़ पौधे हैं।

और उसके नीचे दो ए_सी का पंखे धरे हैं।

और यहां पर बहुत सारी दुकान दो दो तीन दुकान बंद है।

और यहां पर दुकान नहीं खुल रही है उसके ऊपर और उसके ऊपर टीन से गिर रही है नीली सी।

मेज पर्दे से लग रहे हैं।

यहां पर एक आपिस है और ऑफिसे के सामे एक काउंटर पड़ा है।

और यहां पर कलर सफेद --

यहां पर एक फूलों सी की माला है वाइट कलर की और एक यहां पर गुलाब सी की है।

ऊपर से रखा है और यहां पर--

यहां पर बाजार है और बाजार में यहां पर ठेले लग रही है।

और ठेली के बराबर में घर मकान से है और यहां पर साइकल है।

और यहां पर एक दुकान पे एयरटेल लिख रहा है।

और यहां पर बकरी सी बंध रही है बराबर में।

यहां पर एक बहुत बड़ा शीशे सी की बिल्डिंग सी है।

और यहां पर साई तरफ के चारदीवारी से हो गया।

और शीशा सा लग रहा है और यहां पर बेरा कुछ लिख रहा है।

यहाँ पर ऊपर दुकान एक दुकान है और टिन से घिरी है।

यहां पर टीन सी है और यहां पर टीन सी के बराबर में एक पार्क सा है।

यहां पर एक बहुत अच्छा हॉल है और हॉल में लाइटें लग रही--